चामने में एक भगवान दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में बिना है सामने में एक सामने में लाइट दिखाई दे रहा है कपड़ा दिखाई दे रहा फूल दिखाई दे रहा बत्ती दिखाई दे--

कांच के खिड़कियां दिखाई दे रही है पूरा कांच का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है सामने में फूल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है मंदिर के सामने में भगवान जी का मूर्ति दिखाई दे रहा है पिंक कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है लायटे दिखाई दे रही है।

बाइक दिखाई दे रही स्कूटी दिखाई दे रहा साइकिल दिखाई दे रहा है।

यहां पे बड़ा सा ढाबा दिखाई दे रहा है जो रोड के किनारे मे ही ये ढाबा बड़ा सा दिखाई दे रहा है जिसका शटर खुला है एक ठो का बंद है।

पारसारन निगम एल_टी_डी लिखा हुआ सामने में एक बड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर बहोत कुछ लिखा हुआ है एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा ग्रीव दिखाई दे रहा सीढ़ी दिखाई दे रहा छत दिखाई दे रहा आसमान दिखाई दे रहा--

यहां मुझे एक दुकान दिखाई दे रा है दुकान के अंदर बहोत सारे सामान दिखाई दे रा है जिसमें लिखा हुआ है किड्स वेयर --